एक आदमी खड़ा है इस जगह और एक लेडीज है इस जगह और एक पीला साड़ी पहनी हुई है और इस जगह --

और इस जगह बोहोत आदमी है उजला मुरा अ अ हरा रंग का मुर्टठा बंधा हुआ उजला --

बैलून भी से बहोत बढ़िया सजावट भी किया हुआ है बहोत नामी नामी कहते हैं इसके आस-पासपिलर भी है ।

इसमें गाड़ी-वाड़ी बहुत पड़ा हुआ है इसके पास-पास इसके आस पास में बिल्डिंग भी बहुत बड़ा-बड़ा है और इसमें एक आदमी भी है ।

और इसमें बच्चे सब पढ़ने आते हैं तो इसमें कोचिंग भी होता है इसमें भी --

और इसके आ बोहोत बड़ा-सा स्कूल है और इ जगह एक रास्ता है और इ जगह एक औरत भी खड़ा है इ जगह एक गाड़ी भी लगा हुआ है।

इस जगह गाड़ी लगा हुआ है महात्मा बुद्ध का है और इस जगह आस-पास आदमी सब भी चढ़ रहा है बहोत बड़ा-बड़ा सीढ़ी है इसमें और इसके आस पास --

इस जगह बहुत बड़ा-बड़ा पेड़ है और इस जगह बल्ब भी लगाया हुआ है और इस जगह --

इस जगह एक ग्रिल है और ग्रिल के अंदर एक बहुत बड़ा होस्टल है होस्टल में एक बहुत सारा --

नयी बिल्डिंग नहीं लौक रहा है लेकिन इ जगह गाछी-वाछी और इस जगह

ये एक जिम क्लास हैऔर इसमें बोहोत सारा इसमे जिम करने वाला चीज और हमलोग से शरीर का वजन भी माप सकते हैऔर इसमें --

कपड़ा का दुकान में सिर्फ लेडीज का सामान और बॉयज का भी कुछ-कुछ सामान इसमें मिलता है और जो टी-शर्ट - उशर्ट ज्यादा कर के और साड़ी-वाड़ी भी मिलती है इसमें ।

ये एक बिल्ड फील्ड है। और इस फील्ड में मैच खेल रहे है बोहोत लड़का सब एक लड़का साइकिल लगा के ब्लू टी-शर्ट पहेन के खड़ा है और इस जगह बोहोत बड़ा-बड़ा पेड़ सब है।

और इसमें फिर बहोत सारा लड़का और वो फुटबॉल मतलब जितना गेम का सामान होता है सब चीज इसमें खेला जा --

और इस जगह एक ब्लैक बैग भी रखा हुआ है व्हाइट बोर्ड है अगल-बगल में बहोत सारा ।

इसमें इंडियन बैंक मुजफ्फरपुर ब्रांच है बला बाला भाल --

और इसके आसपास उजला रंग के घर भी है और इसमें एक लाल हथौड़ा भी र --